नीचे में पूरा वाइट लाल कलर का कलर हुआ है।

पेड़ का अगल - बगल पत्ता भी झड़ गए --

मशरूम है मशरूम का खेती किया है।

खिड़की दिख रहा है ए_सी दिख रहा है।

एक दूसरे से मनुवा पेड़ झ छोटा-छोटा दिख भी रहा है।